creating basic content पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे content types कंटेंट के प्रकार आर्टिकल लिखना और बुनियादी पेज बनाना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उबंटु लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम drupal 8 और firefox वेब ब्राउजर का उपयोग कर रही हूँ
आप अपने अनुसार किसी भी web browser का उपयोग कर सकते हैं
सबसे पहले content type के बारे में सीखते हैं drupal में कंटेंट type content management system का core है
यह site की रीढ की हड्डी की तरह है
यह एक बात है जो drupal को अन्य cms से अलग करती है
अधिकांश cms में केवल शीर्षक और ढाँचा होता है और उससे पता चलता है कि यह पूरी तरह से अपर्याप्त है
drupal में प्रत्येक कंटेंट item को node कहते हैं प्रत्येक node एक ही कंटेंट type के अंतर्गत आता है
अब content type के महत्व को समझते हैं content type उस प्रकार के nodes के लिए विभिन्न default settings को परिभाषित करता है जैसे कि
node स्वचालित रूप से प्रकाशित की गई है या comments की अनुमति दी गई है और
हमारी site में कंटेंट कैसे जोडा जाता है प्रत्येक content type के fields होते हैं
किस प्रकार का कंटेंट प्रविष्ट हो रहा है इसके आधार पर हमारे पास जानकारी के लिए आवश्यकतानुसार fields हैं
मैं इसे इस तरीके से समझाती हूँ यह imdb com है जो drupal site हो सकती है यह फिल्म red के बारे में है
screen पर आप देखेंगे पोस्टर शीर्षक रिलीज की तारीख
parental rating रनटाइम फिल्म की शैली
body या फिल्म का विवरण
हमारे पास people fields साथ ही कुछ अन्य links और buttons और अन्य चीजों का एक set होगा
अन्य cms में css में इस layout को बनाने के लिए हम dreamweaver का उपयोग कर सकते हैं
क्या होगा जब हम 2010 में सभी फिल्मों के लिए लैंडिग पेज स्टार bruce willis पैरेंटल रैटिंग pg 13 के साथ चाहते हैं
यदि आप अन्य cms का उपयोग कर रहे हैं तो यह करने में कठनाई होगी लेकिन drupal में यह बहुत ही सरलता से किया जा सकता है
यह content types का असली फायदा है अब आगे बढते हैं और कुछ निर्मित content types को समझते हैं
बाद में हम नए content types को बनाने के बारे में भी सीखेंगे अपनी drupal site को खोलें जिसे हमने पहले बनाया है
पहले हम article content type के बारे में सीखेंगे content पर और फिर add content पर click करें
ध्यान दें कि हमने पहले ही एक article बनाया है अब हम सभी elements के साथ एक अन्य article बनायेंगे
article पर click करें एक article में एक अनिवार्य field है अर्थात title
यदि हम body में कुछ भी नहीं लिखते हैं तो भी हमारे पास कुछ होगा एक article content type summary के साथ आता है
यदि हम summary में कुछ नहीं लिखते हैं तो drupal इसे बनाने के लिए पहले कुछ अक्षरों को लेता है इसे teaser mode कहते हैं
आगे बढते हैं हम यहाँ text की कुछ lines लिखेंगे
आप अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं
यह मेरा text है
यहाँ text format दर्शाता है कि हमें html में किन elements को रखने की अनुमति है
हमारे पास basic restricted और full html है क्योंकि हम super यूजर हैं तो हम सब कुछ देख सकते हैं
आमतौर पर जब एक यूजर editor या publisher के रूप में लॉगिन करता है तो यहाँ केवल एक ही text format होता है उनको केवल उस text format को उपयोग करने की अनुमति होती है
अधिक जानकारी के लिए about text formats link पर click करें
अभी के लिए basic html चुनें
basic html हमें source code को देखने की और कुछ basic html elements जैसे
paragraph tag strong italic
unordered list ordered list और कुछ अन्य को उपयोग करने की अनुमति देता है
full html हमें javascript और iframes सहित किसी भी html को embed करने की अनुमति देता है
restricted html में हमें सिर्फ कुछ जैसे कि paragraph tag या line breaks प्रविष्ट करने की अनुमति होती है
wysiwyg editor ck editor है हम इसे बाद में सीखेंगे
हम यहाँ bold italics linking unordered और ordered lists block quote और image को देख सकते हैं
formatting drop down से हम कई h tags और फिर view source चुन सकते हैं
जब मैं text format को बदलती हूँ तो मुझे बहुत सारे buttons दिखते हैं हम इनके बारे में बाद में सीखेंगे
अभी के लिए इसको basic html में ही रखते हैं continue button पर click करें
अपने article को पूर्ण करते हैं एक बार फिर से tags introduction और drupal का उपयोग करते हैं
अभी के लिए हम image को खाली ही रखेंगे आपने पहले ही देखा है कि यह कैसे कार्य करता है
यहाँ दाईं ओर हम visibility और publication settings देखते हैं
इस विशेष article के लिए version control enable करने के लिए create new revision चैकबॉक्स पर click करें
यदि हम menu link में एक article को जोडना चाहते हैं तो provide a menu link चैकबॉक्स पर click करें
यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें सैकडों mails मिलेंगे इसलिए चैकमार्क को हटाएँ
हम एक विशेष node पर comments on या off कर सकते हैं
यहाँ हम url alias दे सकते हैं
यदि रिक्त रखते हैं तो drupal हमारे लिए यह बनायेगा
authoring information के नीचे हम देख सकते हैं कि इस node को किसने बनाया है और कब बनाया है
promotion options के नीचे हम view settings set कर सकते हैं जैसे कि या तो इस node को फ्रंट पैज के लिए प्रमोट किया जायेगा और या तो यह सूची के शीर्ष पर स्टिकी होगा
ये setअप हैं जब हम अपने content type को बनाते हैं और editor इनको बदलना नहीं चाहता है
लेकिन हम अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं
अंत में अपने node को सेव करने के लिए save and publish पर click करें
तुरंत ही node हमारी site पर live दिखता है हम इसे यहाँ देख सकते हैं
home पेज पर click करें
हमारे पास welcome to drupalville और drupalville s second article है
teaser mode में ये publication date order में प्रदर्शित होता है
read more और add new comment links यहाँ है
drupal शब्द के साथ सभी nodes tagged की सूची को प्राप्त करने के लिए drupal link पर click करें
फिर से nodes publication date order में प्रदर्शित होते हैं
जो कि article content type है
edit link पर click करें
हम अपने अनुसार यहाँ कुछ भी प्रविष्ट कर सकते हैं
drupal हमें default रूप से बहुत सारे विकल्प देता है
save and keep published पर click करें
हम content types का उपयोग किसी के लिए भी कर सकते हैं
अन्य item को जोड़ते हैं shortcuts और add content पर click करें
basic page को चुनें basic page में title और body शामिल है
वहाँ कोई tags और images नहीं है यह default रूप से promoted to front page नहीं है
इसके अलावा यहाँ कमेंट करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि यह home पेज के लिए प्रमोट नहीं है नया menu बनाने के लिए यह बहुत ही आसान है
about drupalville type करें
अपने अनुसार यहाँ कुछ text type करें
अब menu settings के नीचे provide a menu link को check करें
आप देखेंगे कि title menu title में बदल गया है
यदि हम चाहें तो इसे कम कर सकते हैं इसे main navigation में देखें और अभी के लिए weight 0 रखें
weight जहाँ menu सूची में दिखाई देगा निम्न संख्या या नकारात्मक संख्या इसे उच्चतर कर देगी अर्थात यह शीर्ष पर दिखेगा
बाकि सब कुछ समान रखें सुनिश्चित कर लें कि menu link checked हुआ है और save and publish पर click करें
हमें एक about drupalville link प्राप्त होता है यह हमें about drupalville node शीर्षक के साथ basic page content type पर we जायेगा
node id 3 है यदि आपने पहले ही और nodes जोडे हैं तो आपकी node id मुझसे भिन्न हो सकती है
नीचे बाईं ओर हम देख सकते हैं कि node id 3 है तथापि आपको अक्सर उसकी जरूरत नहीं है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
संक्षेप में इस tutorial में हमने content types article लिखना और basic page बनाने के बारे में सीखा
यह video acquia और os ट्रेनिंग से लिया गया है और spoken tutorial project आईआईटी बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है
इस link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करके देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
spoken tutorial project nmeict मानव संसाधन विकास मंत्रायल और nvli संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद